यहां पर बहुत सारी मछलियां हैं।

सामने फूलों का थोड़ा गुलदस्ता--

इसमें एक पेन रखी हुई है।

यहां पर बराबर में मकान लगे हुए बने हुए हैं।

सामने की ओर हल्की हल्की चेयर दिख रही है।

स्विच नजर अ बोर्ड नजर आ रहा है।

पर पानी की टंकी है।

यहां पर में टेंट लगा हुआ है।

साइड में कुछ लाल एंड कलर का पिलर दिख रहा है।

अंदर से जंगल बहोत ही ही सुनसान है।

की एजेंसी है जिसका नाम लिखा हुआ है यूनिट --